आ टेबल पर फ्लावर वाश रखा है।

आ सभी अंडर गारमेंट्स के बॉक्सेस हैं।

अ दो चेयर पे दो आदमी बैठे हुए हें।

कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं।

सीलिंग फैन लगा है।

एक टिन शेड बना हुआ है।

अ दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा है करटेंस लगे हुए हैं ।

अ पेड़ लगे हुए हैं।

इमेज में रूम है रूम में बेंचेस लगी हुई हैं बहुत सारी ।

इमेज में बड़ा सा हॉल है।

इमेज बस है वाइट और ब्लैक कलर की है बस पर दो चुनरियाँ बंधी हुई हैं।

एक टेबल है टेबल के फ्रंट में मिरर लगा हुआ हे।

मिरर पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए है एक ब्रेंच लगी हुई है।

तीनों ने लाइट जैकेट्स पेहने हुए हैं एक और बोट है ब्लू कलर की उस पर दो लोग बैठे हुए हैं।

एक रेड कलर का क्रॉस दीवाल पर बना हुआ हे बोहत सारे लोग हे।

गमले में पौधे लगे हुए हैं।

अ वाइट कलर की प्लेट पर एक ग्रीन बनाना लीव्स रखी हैं।

इमेज में एक येलो कलर का लोडिंग रिक्शा है।

होटल पे केरल होटल वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

अ ए.सी. लगे हुए हैं ब्लू और व्हाइट लाइट्स लगी है ।

इमेज में एक बड़ा-सा व्हाइट टेंट लगा हुआ है।

मॉल के गेट पर रेड और वाईट बलून से डेकोरेशन किया है।

लड़का आयरन से टेबल पर कपड़े रख कर प्रेस कर रहा है।

अं एक दुकान पर ज्ञान संसार लिखा है।

इमेज में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हें।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं एक बैरिकेट लगा हुआ है।

एक बड़ी-सी नाव नदी में चल रही है।

और दुकान में एक बड़ा-सा फ्रिज रखा है।

आ पोस्टर पर पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा लिखा हुआ है।

बिजली के खम्भे लगे हुए है।